वो उस पर मोटरसाईकिल दिख रही है और वहां पे दिन का समय दिख रहा है वहां पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहे है।

एक रेल्वे स्टेशन दिख रहा है यहाँ पे रेल्वे के रूमस दिख रहे है एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है वहाँ पे एक बाग दिख रहा है बैठने के लिए और एक वहाँ पे एक ओटा भी दिख रहा है बैठने के लिए वहाँ पे एक औरत और आदमी बैठे उनके ठेले दिख रहे--

एक स्टोर दिख रहा है वहां पे कुछ खाने की चीजे रखी हुई दिख रही है और आ वहां पे एक टेबल भी दिख रहा है ला ला लाल कलर का वहाँ पे कुछ कुर्सियां दिख रही है।

स्टेडियम दिख रहा है स्टेडियम पर कुछ अ ल लड़के खेलते हुए क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पे कुछ पुल दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है वहाँ क वहाँ पे दीवार दिख रहा है कंपाउंड क जैसी वहाँ पर एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

यहाँ पे तीन पुतले दिख रहे हैं एक औरत का पुतला बना है उसके बच्चे का भी पुतला दिख रहा है वहाँ पे वहाँ पे वो औरत खाना बनती नज़र आ रही है उसके सामने कुछ समान रखा है वहाँ पे एक आदमी बैठा है उसके पास दो गिलास हैं वो --

पौधे दिख रहे हैं और बाजू में भी कुछ घर दिख रहे हैं जो पुराने जैसे दिख रहे हैं जाने के लिए वहां से जगह दिख रही है छोटी सी और वहां पे घास-फूस दिख रही है दिन का समय दिख रहा है कोई इंसान --

जगह दिख रही है दोनो तरफ दो इमारते दिख रही है और एक काले कलर का वहां पे गेट दिख रहा है वहां पे सीढ़ियाँ दिख रही है और दूसरे तरफ एक उम जो पाठशाले कुछ दिख रहा है वहां पे ऊपर की तरफ काले कलर का गेट दिख रहा है नीचे--

की दो औरते दिख रही है सामने से रास्ता दिख रहा है दूर कुछ पेड़ दिख रहे है और इमारत दिख रही है दिन का समय दिख रहा है।